यह किसी एयरपोर्ट के सामने की तस्वीर है।

जिसपे बहोत सारे छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं।

यह किसी सूखे नदी की तस्वीर है जिसमें थोड़ी पानी दिखाई दे रही है और उसके आस-पास छोटे-छोटे पहाड़ी दिखाई दे रहे है।

जिसका गेट दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह किसी मार्केट के सामने की तस्वीर है| जिसमें एक--

बैंक का बोर्ड लगा हुआ है और कुछ दुकानें की बोर्ड लगी हुई है|

सामने एक हरा सा मैदान है उसके पास में दो छोटे-छोटे घर बने हुए हैं और आस-पास पेड़-पौधों नज़र आ रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है उसके नीचे मोटरसाइकिल खड़ी है|